उस लड़के ने सफ़ेद कलर की टोपी पहनी हुई है और सफ़ेद कलर की शर्ट और हातों मे सफ़ेद कलर के ग्लप्स पहने है।

बड़ा सा गेट दिख रहा है। उस गेट के ऊपर येल्लो कलर का लंबा सा बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड के ऊपर प्रणाम लिखा हुआ है।

एक हॉल मे बेंचे बिछी हुई है उन बेंचों पर बहुत सारे स्कूल के बच्चे बैठे हुए है।